और इस दीवाल को पीले रंग से पेंट किया गया है और इस पे बोहत अच्छी अच्छी तरह की आकृतिया बनाई गई है।

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिग दिखाई दे रही है। नीचे बोहत सारे लोगो को आते-जाते देखा जा सकता है। अगल-बगल में बोहत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लाइटें जलती हुई देखी जा सकती है। नीचे कुछ टालिस दिखाई दे रहे हैं।

खड़ा हुआ है। यहाँ पर उपस्तिथ ज्यादातर लोगों ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है। बगल में एक ऊपर जाने की सीढ़ी है।

घासे लगी हुई हैं। ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है। बहोत सारी लाइटे इसमें जलती हुई साफ देखी जा सकती हैं। यह देखने मे बोहत सुंदर है।

सामने एक बडा सा खंभा लगा हुआ है जिस पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है। यह देखने मे बोहत सुंदर लग रही है और इस पे कुछ --

यहा पर दो सीधी रोड जाती हुई दिखाई दे रही है। सामने की तरफ एक बिल्डिग दिखाई दे रही है जिसमे बोहत सारे गे खिड़कियाँ बनी हुई हैं।

यहाँ पर एक टेंपू दिखाई दे रही है जोकि ग्रीन एण्ड यलो कलर की दिखाई दे रही हे ।

यहाँ पर एक बडा सा मकान जेसा कुछ दिखाई दे रहा हे जोकि सफेद रंग का है।

यहाँ पर एक दरवाजा दिखाय दे रहा है जिसके अंदर जाने के लिए कुछ सटर जैसी लगी हुई है और कुछ सीसे भी --

यहाँ पर एक बोहत बड़ा सा मंदिर जैसा कुछ दिखाइ दे रहा है। अगल-बगल में बोहत सारे पेड़-पोधे दिखाइ दे रहे हैं। नीचे की तरफ कुछ स्कुट खड़ी हुई है।

अगल-बलग में बहुत सारि लाइटे जलती हुई दिखायी दे रही हैं।

चेयर का कलर लाल है और लडको ने सफेद रंग की ड्रेस पहन रख --

नीचे की तरफ बहोत अच्छे तरीका से इनको बेस बनाया गया है और इनको अच्छी तरह से सजाया भी गया है।